ये एक बस है व्हाइट कलर की और यहाँ पे ये रोड है ।

और यहाँ पे एक और व्हाइट कलर की कार बस है और यहाँ पे घर भी कुछ दिख रहे है।